बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है तथा दुकान के बगल भी दुकान है जोकि शटर है शटर उसका बंद है दुकान के बाहर भी कई मेज लगे हुए हैं ।

छप्पर भी बनी हुई है और अन्दर से भवन का रंग संतरी रंग का है उसकी खिडकिया है तथा अगल- बगल पेड़ और भवन है छोटा --

यह फोटो के में सामने आप देख सकते है की एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है जो की सफ़ेद रंग का है इसकी तीन म मज़िला का ईमारत है ये --

एक गुलाबी कलर का लोहा है उसपे भी कई तोते बैठे और लेटे हुए है तथा कुछ तोते जाल के उपर बैठे हुए है तो कुछ नीचे बैठे हैं ।

बाइके दो ठू टू व्हीलर खड़े है उसके सामने बहुत बड़ा भवन जोकी काफी बड़ा हैउसके ऊपर काफी टावर है सामने बहुत खिडकियाँ हैं ।

ऊपर होल्डर भी लगाया है तथा अन्दर से सफ़ेद है।

यह एक दूकान है दूकान के उपर बहुत बड़ा होल्डर लगा हुआ है जिसके अन्दर लाइट है तथा दूकान के नीचे भी एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है।